ये एक जिम है और इसमें रनिंग मशीन भी लगाई हुई है।

ये एक मंदिर है और यहां पर रेलिंग भी लगी हुई है और यहां पर पत्थर भी लगा हुआ है।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

और यहां पर एक स्कूल वैन भी खड़ी हुई है।

और यहां पर एक लोहे का पाइप भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर एक लड़की भी खड़ी हुई है।

और यहां पर पेंट भी हुआ हुआ है।

और यहां पर एक लाइट भी लगी हुई है।

ये एक शादी का हॉल है।